और पिंक कलर का पैंट भी पहना हुआ है और वहां साइड में भी और एक आदमी है।

और यहां दूर से एक पहाड़ दिख रहा है जिसकी सीनरी बहुत अच्छी दिख रही है ग्रीनरी है उस पे।

जैसे बाहर सारे टीचर्स दिख रहे हैं जिन्होंने साड़ी पहनी हुई एक कलर की साड़ी पहनी हुई है सब ने सिर्फ एक औरत ने अलग कलर की साड़ी पहनी हुई है व्हाइट कलर की।

अ काउंटर पे दो कंप्यूटर लगे हुए हैं यह बंदे इसी पर काम कर रहे हैं और वहां साइड में ब्राउन कलर की कुर्सी भी दिख रही है।

स्कूल या कॉलेज की फोटो लग रही है जिसको आंगन में एक पार्क जैसी बनी हुई है इसमें बहुत अच्छा घास वास पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इसमें ब्लैक कलर की कुर्सियां टेबल वगैरा सजाए हुए हैं और साइड में एक अलमारी भी है।

और वहां दूर एक ग्राउंड भी है जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए है।

और इन्होंने वहां पे आयरन का कुछ काम किया हुआ नीचे और आयरन की कुछ पिलर्स भी है वहां पे--

और यहां साइड में एक सोफा दिख रहा है जो अंदर कोने में लगा हुआ है।

अ ये एक शॉप है। ये जो अ-अ-अ शॉप है ये सारी की शॉप लग रही है।

दूर-दूर से पेड़-पौधे घास वास दिखाई दे रहा है और वाइट कलर की एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

आधो ने ऑरेंज कलर की जैकेट पहनी हुई येलो कलर का हेलमेट --

ये ट्रैक्टर की शॉप है जहां पर बहुत सारे ट्रैक्टर दिख रहे हैं ब्लू कलर के ट्रैक्टर है।

बहुत सज रहा है वहां पे ये छत और गेट का कलर ब्राउन कलर का है।

रेड कलर की वाइट कलर की बलून लगे हुए हैं और ब्लू कलर भी हैं।

जिसके इर्द गिर्द एक ग्रिल जैसी लगी हुई है और इस मकान के ऊपर दो ब्लैक कलर की टंकी भी है।

के हाथ में भी कुछ है और इस डैम के पास दो पेड़ दिख रहे हैं।

ये भी एक स्कूल की फोटो लग रही है जिसकी ग्राउंड में ये बच्चे खेल रहे हैं जिनके सर पे हेलमेट लगे हुए हैं ग्रीन कलर की ऑरेंज कलर के ब्लू कलर के।

और वहां दीवार पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट लखनऊ बी सेक्टर सिक्टी टू नोएडा ।

और वहां रिसेप्शन के सामने भी दो चेयर लगी हुई है वहां रिसेप्शन पे भी कुछ सामान है।

ये एक सब्जी की शॉप लग रही है जहां पे बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं।

और वहां दूर दूर तक पेड़ पौधे लगा रहे हैं।

और साइड में एक होटल है जिसका नाम होटल प्रीति है।